इस तस्वीर में एक डांस क्लब का दृश्य दिख रहा है जहां रंग बिरंगे लाइटें चमक रही है।

लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।

छत पर पंखे और लाइटें लगी हैं।

इस चित्र में एक दीवार पर सजाए गए कुछ लघु शिल्प दिख रहे हैं।

स्टील के ट्रे में लाल रंग के डिस्पोजेबल कप रखे हैं।

दीवार पर एक फ्रेम लटका है।

इस तस्वीर में नटराज नर्सरी का एक बड़ा बैनर दिख रहा है जो हरे रंग की जाली से ढके एक अस्थाई ढांचे पर टांगा हुआ है।

अलमारियों में अलग अलग कलपुर्जे व्यवस्थित किए गए है।

शटर पर बड़े अक्षरों में होंडा लिखा हुआ है।

कुछ पारंपरिक परिधान में तो कुछ आधुनिक फैशन में--

इस तस्वीर में एक पुरानी इमारत का अंदरूनी दृश्य दिखाई दे रहा है।

सड़क पर कई वाहन जैसे ऑटो बाइक और रिक्शा चल रहे हैं कुछ लोग बाइक पर बिना हेलमेट के बैठे हैं।

पास में दो कुर्सियां है एक प्लास्टिक की और दूसरी गद्दीदार।

जलप्रपात के चारों ओर हरी भरी वनस्पति है जो प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है।

इस तस्वीर में एक दफ्तर का दृश्य है।

एक फ्रीजर पर क्रीम बेल और फंतासिया मैक्सिमम लिखा है।

काउंटर के पीछे कांच से ढका डिस्प्ले है।

कक्षा में कोई छात्र नहीं है जिससे यह एक शांति भरा माहौल दिखता है।

ढाबा के सामने दो कारें खड़ी हैं।

बीच में ईटों से बना पथ है जो बगीचे के किनारे तक जाता है।

फूलों की क्यारियां किनारो पर सजी हुई है और कुछ पेड़ व झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

एक बच्चा खेल के दौरान गेंद फेंक रहा है और अन्य खिलाड़ी सक्रिय है।

जहां रंग बिरंगी रोशनी और आधुनिक आर्केड गेम्स लगे हुए हैं।

अंदर कुछ टेबल कुर्सियां भी रखी है।

इस तस्वीर में एक भव्य सभागार का दृश्य दिख रहा है जहां एक कार्यक्रम चल रहा है।

मंच पर कुछ लोग खड़े हैं और भाषण दे रहे हैं।